यहा ये एक कोई डिज़ाइनर का तोहफा बना है जो चारो तरफ से बना हुआ है।

एक जो औरत है वो बॉय कट जैसा बाल कटाई हुई है और एक पूरा ऊपर मे है और सब कटा हुआ है।